यहां पे एक मेडिकल स्टोर नजर आ रहा है जिसमें टेबल लगी हुई है दवाइयां भी बहोत सारी पड़ी हुई है।

यहां पे एक सब्जी मंडी नजर आ रही है दुकान नजर आ रही है ऊपर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय।

यहां पे मंदिर दिखाई दे रहे है एक दो तीन मंदिर दिखाई दे रहे --

डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा भी हुआ है एक झूमर भी लगा हुआ है जो बहोत खूबसूरत है।

यहां पे एक फूलों की दुकान नज़र आ रही है।

छोटा सा बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

कोट भी पहन रखा है आदमी पीछे घूम कर खड़ा हुआ है।

जो खेत बाया हुआ है उसमें कुछ--

और मॉल सा लग रहा है जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजे--